यहां एक आदमी भी दिखाई दे रहा है खिड़की के पास।

यहां एक पंखा टंगा हुआ है पंखा का रंग सफेद है।

यहां एक मकान का दृश्य है जिसका रंग पीला है।

यहां बहुत सारी लाइट्स सजाए हुए हैं।

हरे रंग की कुछ पत्तियां हैं प्लास्टिक की और यहां कुछ लड़के दिखाई दे रहे हैं जो की खड़े हैं।

कुछ रैक में शीशे लगाए गए हैं जिसके ऊपर लाइट येलो येलो जल रहे हैं।

और यहां डी_जे का कलर ब्लैक है।

और यहां की खिड़की खुली हुई है।

यहां एक आदमी साइकिल के ऊपर लदा हुआ है।

यहां दो तोते दिखाई दे रहे हैं जिसका कलर ब्लू और येलो में है।

यहां कुछ लड़कियां डांस कर रही हैं।

और उसके कंधे में एक फूल का माला टंगा हुआ है।

और उसमें कुछ खिड़कियां है खिड़की का रंग काला दिखाई दे रहा है।

उसपे एक बोतल रखा हुआ है ग्रीन कलर का और एक बोतल व्हाइट कलर का है।